एक दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पे अलमारी भी दिखाई दे रही जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है कुछ डब्बे भी रखे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ बोतले भी दिखाई दे रही।

ये एक चद्दर शेड दिखाई दे रहा है चद्दरों का कलर ब्लू वे एक डिबे भी दिखाई दे रहा है और खंबे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बाउंड्री भी दिखाई दे रही है रोड भी दिखाई दे रहा है उपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन--

कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है टेबल भी दिखाई दे रही है यहा पे एक कैमेरा भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहे है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही यहा पे बहुत सारे पोस्टर भी दिखाई दे रहे है।